आम सस्ता नहीं है या आम रास्ता नहीं है अंदर दो आदमी दिखाई दे रहे है एक औरत दिखाई दे रही है सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है एक केरी का पेड़ दिखाई दे रहा --

इस इमेज में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में घांस दिखाई दे रही है गमले रख रखे हुए हैं और एक गुलाब दिखाई दे रहा है गमले में लगा हुआ।

पीछे एक पर्दा लगा हुआ है स-सफेद कलर का उसमे फूलों की डेकोरेशन है इसमे रेड और व्हाइट कलर की फूलों की डेकोरेशन दिखाई दे रही है।

इस इमेज मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है और उसमे लाल और पीले फग्गे लटके हुए दिखाई दे रहे है लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक स्कूल सा बना हुआ दिखाई दे रहा है ग्राउन्ड में दो पुलिस वाले खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं और एक --

एक दो तीन चार पचा छह गेट उम्म बने हुए दिखाई दे रहे है फ्लावर्स लगे हुए दिखाई दे रहे है।